पीसे का गेट लगा हुआ है। हटर आगे है।

बहुत पुराना पहाड़ लग रहा है।

लाइट वही चल रहा है रात का समय सामने उचर कलर की चपैया खड़ी है और ये झाला रोलर लगाए हैं घर में दिवाली वाली का समय लग रहा है।

फूल को बेच रहे हैं।

ये दरगाह औरगाह लग रहा है पीछे माइक स सायरन आवाज है सामने हमारा राष्ट्र चिन्ह तिरंगा है।

ये एक खेल का मैदान है। ये पानी वाला नली फेका गया है। दोतल्ला मैदान है। ऊपर सोलर पैनल लगा है।

कोई दुकान पे कोई मंदिर है।

ये क्रिस्चन लोगा का कुछ स्कूल है।

और सभी लोग सीढ़ी पे खड़े होके बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं।